बिल्डिंग दिख रही है बोर्ड दिख रही है।

यहां पे एक ठो घर बना रहे है।

सारे और ऑरेंज कलर का वहां पर दिख रहा है।

एक येलो कलर का बिल्डिंग दिखा हुआ है और--

और उसका पीछे में है और उसका रेड कलर का--

बहुत सारा कुछ कुछ लिखा हुआ है और उसका पता उसका ट्रक का गेम है।

ऊपर में भी है और--

यहां पे एक दो हॉल दिख रहे थे।

एक दो आदमी ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना हुआ है और ब्लैक कलर का पहना हुआ है।

एक साइड में एक ठो आदमी रेड कलर का दिख रही है और छोटे बच्चे लोग दिख रही है। फोन पकड़ के दिख रही है। पढ़ाई कर के दिख रहे है और --

इसमें एक होटल दिखाई दे रहे हैं उसमें चेयर बहुत सारा है।

ग्रे कलर का है पिंक कलर का है और उसका बाद कलर ब्लू कलर का है नीला कलर का है जग भी दिखाई दे रहे दो ठो और उसका--

और नीचे में बहोत सारा स्कूटर है बाइक है और आदमी भी दिखा हुआ है रास्ता भी दिखा हुआ है बैक साइड में एक ठो गेट भी है।

और उसमें कोई कोई चला हुआ है कोई कोई दुकान भी कर रहा है कोई कोई खड़ा --

यहाँ पे एक दो दुकान दिखाई दे रही चिप्स दिखाई दे रहे अंकल चिप्स दिखाई दे रहे लेज दिखाई दे रही है।

एक ठो रास्ता दिख रही है और फैन ए_सी दिख रही है औ--

पानी दिख रहे हैं चिपकाया हुआ और--